कुछ इक्विपमेंट नजर आ रहे है आपन लोहे की चारों तरफ जालिया लगी हुई है।

सामने एक सोफ़ा रखा हुआ है पीछे डिजाइन नुमा एक वॉल बनी हुई है सामने एक रेक बनी हुई है जिसमे शैम्पू कलर्स फ्लावर्स इत्यादि रखे हुए है।

किराने की दुकान के अंदर काउन्टर रखा है काउन्टर के बाहर बहुत सारी थेली पॉलिथीन बाहर की तरफ गैस सिलिन्डर रखा हुआ है ऊपर की तरफ बिल्डिंग पर सफेद कलर ऑरेंज कलर येलो कलर ब्लू कलर पुता हुआ है।

इसके अंदर दो बच्चे नाहा रहे है सामने बड़ा सा घर बना हुआ है जिसमे कई लोग खड़े हुए है सामने की तरफ एक गेट भी बना हुआ है।

कुंड बना हुआ है इसमे बीच मे पानी भरा हुआ है पानी मे गाजी भी है चारों तरफ पथरों की दिवार बनी हुई है।

मंदिर है सामने की तरफ एक ऑरेंज कलर का मंदिर बना हुआ है नीचे भी इसमे टेबल ऑरेंज कलर का है इसके सामने की तरफ प्रस्तावे रखे हुए है।

सामने की तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमे बंधन बैंक लिखा हुआ है सामने की तरफ एक रेड कलर का बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमे कोटक लिखा हुआ है।

क्रिकेट बैट की दुकान है सामने की तरफ इसमें क्रिकेट बैट रखे हुए है। जिसमे एसएस टोन एडीडास रखा हुआ है लिखा हुआ है।